ये किसी गाँव अम्म्म पटना का फोटो है पता नी ये किसी बिल्डिंग का मरम्मत हो रहा है आगे वो --

इसका पत्ता का साग बनता है ये पूरा क हरा कलर का है देखते गए बहुत सारा दूर में है।

ये सामने छाता तीनगो लगा हुआ है जिसमें नाल लाल पीला बुलु नीला कलर है सामने सूरज दिख रहा है इधर तार का पेड़ है सामने भी एगो पहाड़ दिख रहा है बहुत बड़ा टेबल भी ल --

ये वाटर पार्क का फोटो लग रहा है जोकि सामने बहुत बड़ा होटल सा दिख रहा है उसके बगल में वाइट कलर का एको बिल्डिंग है।

ऊपर में टाइल चुछ लगा हुआ है गेट है तीन चार कलर में है ये हरा कलर का इसका बहु --

ये शोरूम का फोटो है जिसपे आदमी आगे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

एक वादमी खड़ा हो के वहाँ वे तिरंगा फहरा रहे उसके बगल में भी एक वादमी खड़ा है हाथ में पन्नी लेके पूरा बगल में दो --

किसी रूम का फोटो है जोकि बेड है बेड में वाइट कलर का चादर उर बिछा हुआ है ऊपर में वाइट कलर का तकिया भी है।

कामघुन धेनु एन_एक्स_टी का प्रचार कर रहा है मजबूती जो पानी को भी रोके अंबुजा सीमेंट उसके नीचे बालू है बालू पे कुत्ता सुतल है।

चारों तरफ से गमला रखा हुआ है सजा के एकदम लाल लाल गमला जिसमें फूल है रंग बिरंग।

फुट ट्रैक है आई_आर_सी_टी_सी का किसी रेलवे स्टेशन का फोटो है बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है आगे रिक्शा लग्ग्ल है।

ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ड्राइंग सिखा रहे कॉल पे लग के बात करे हैं नई वीडियो बना रहे हैं।

इधर हरा कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं काला कलर का बा बोडरी --

तंदूरी चाय वाला दुकान है तंदूरी चाय स्पेटल लिखा हुआ है आगे डस्टबिन रखा हुआ है उसके बगल में भी कुछ और रखा हुआ है उकरा बगल में बूढ़ा --

पं पंखा लगल है खंड बाय खंड तीगो पंखा है पूरा ट्यूब लाइट से घेरा हुआ है।

ऑटो जो है काला कलर का ऑटो में सवारी पैसेंजर सब बैठल है सामने वो दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर वो साई --

और ओला जे उ व्हाइट कलर का शर्ट पहने है देवाल पूरा एकदम उजला और नीचे में काला है।

एक झील का फोटो है जिमें इधर लाल कलर का कुछ बना हुआ है सामने बहुत सारा बिल्डिंग दिख रहा है ऊपर में पेर है पेर का टहनी पूरा नबी के तरफ से --

सलवार पहन के है उ दुपट्टा ऑरेंज कलर की डाली हुई है बगल में खड़े है चश्मा लगा के काला कलर के शर्ट पहने--

सामने वो सारे लाल कलर का शर्ट पहन के बाहर ग्रिल है ग्रिल के बगल में वो लड़की है।

उधरे को पेड़ दिख रहा है सामने में पानी एकदम गहड़ा सद नजर आ रहा है सामने में पीला पीला कलर का हो चुका है पहारपन की वजह --